इस इमेज में एक छत बनती दिखाई दे रही है जहां पर ढेर सारे चलिए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने पार्क दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ झूले नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ पैसेंजर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर मंदिर दिखाई दे रहा है और कई सारी लाइटे जलती नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है और सामने कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने एक हाॅल दिखाई दे रहा है टेबल पर और सामने कुछ लोग बैठे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में कई सारे लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है और सामने पानी भरा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज मे सामने बड़ा सा वेटिंग हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लोग बैठे हुए नज़र आ रहे है।

इस इमेज में देखिएगा सामने एक रूम दिखाई दे रहा है जहां पर टेबल कुर्सी और खिड़की भी नजर आ रही है।

इस इमेज में एक फिश फिश मार्केट दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लोग मछली खरीदते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहाँ पर जिम दिखाइ दे रहा हैं और एक्सरसाइज करने की मशीने भी नजर आ रही है।

इस इमेज में सामने देखिएगा एक नदी दिखाई दे रही है और ऊपर तीन नाव भी नजर आ रही है।

इस इमेज में दिखेगा यहां पर सड़क पर गाड़ियां चलती दिखाई दे रही है और ऑटो रिक्शा भी नजर आ रही है।

इस इमेज मे देखिएगा यहां पर जंगल का दृश्य दिखाई दे रहा है और व्यक्ति ने फूल पकड़ा हुआ नज़र आ रहा है।

इस इमेज मे देखियेगा यहां पर मकान बनने का काम चल रहा है और सामने ये व्यक्ति बैग टंगे हुए दिखाई दे रहा है।

इस इमेज मे सामने एक रूम दिखाई दे रहा है जहां पर टेबल और कुर्सी रखे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर टेबल और कुर्सी रखे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक कपड़ों का मॉल दिखाई दे रहा है जहां पर ढेर सारे कपड़े टंगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक झांकी दिखाई दे रही है और फूलों का हार भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक छोटा सा रूम दिखाई दे रहा है जहां पर मशीने भी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है और सामने दो व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक झाकी निकलती दिखाई दे रही है और बहोत सारे लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक जलूस निकल रहा है और बहुत सारे लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है।